ये काफी सुन्दर जगह है यहाँ पे धान की खेती की गयी है।

जैसे अ तेल साबुन खाना उम-चावल सब प्रकार का चीज मिलता है यहाँ पे।

यह एक मॉल है। ये बोहोत सारे यहाँ पे मॉल हैं। यहाँ पे लोग नही दिखाई पड़ रहे हैं।

जो कि यहाँ पे यो गाने वाली जो गाडियाँ होती हैं वो जो सामान लिया जाता है वहाँ पर लेकर उसे जाया जाता है जो सामान उठाया जाता है और ख़रीदा जाता --

यहाँ पे भी मेला लगा हुवा है। लोग झुण्ड में खड़े हैं और काफी अच्छा ये झुण्ड है और बिजली की तार दिख पड़ रही है।

लोग यहाँ पर आते हैंपुस्तक पढ़ते हैं और पुस्तक पढ़ करके कुछ ले कर के भी जाते हैं।

लोगों का ये मकान है काफी अच्छा सुंदर मकान है ये यहाँ पे कोई आदमी नही है अ और काफी खर्चीला मकान है काफी एक्सपेंडिचर लगा होगा इस मकान को बनाने में।

ये काफी अच्छा ये सुन्दर दृश्य है प्राकृतिक दृश्य है।

प्रकृति की गोद में बैठा है ये पर्वत श्रृंखलाएं और ये भी जलाशय है नदी बहती हुई पेड़-पौधे है काफी अच्छा सुन्दर मनोह मनमोहक दृश्य है।

भगवान का पूजा करता हुवा ये आदमी। ये एक मंदिर है जिसमें दो थाली हैं एक पीतल का थाली है एक स्टील का थाली है। दोनों थाली में कुछ रखा हुवा है।